सीढ़ी लगा हुआ है खिड़की दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर मुर्गी है। मुर्गी का फार्म है। मकान का घर है। जाने वाला रास्ता है। मा --

यहाँ पर दु मंजिला घर है। गाछी दिखाई दे रहा है। मोटरसाइकिल दिखाई दे रहा है। ब्रिन के गाछी है वहाँ पे बोर्ड लगा है।